टेबल है चेर है यहां टेबल पे बहोत सारे पानी के मग और ग्लास दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे बहोत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं मूर्ति के ऊपर--

सड़क के पार यहां पे बहोत सारे ट्राफिक है और यहां पे कार दिखाई दे रही है।

झाड़ियां दिखाई दे रही हैं बहुत सारे खिड़कियां दिखाई दे रहे हैं और यहां पे एक सफेद रंग की कार दिखाई दे रही है।

और यहां पर एक आदमी पूरा सेफ्टी जैकेट पहन रखा है। और यहां पे एक छोटा सा ऑक्सीजन मास्क दिखाई दे रहा है।

ये एक स्कूल दिखाई दे रहा हैं और यहां पे एक स्कूल बस दिखाई दे रही है येलो कलर की।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

यहां टेबल के ऊपर पानी की बॉटल्स दिखाई दे रहे हैं और यहां पे छोटे-छोटे फ्लॉवर पॉट्स दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे बड़े बड़े झाड़ियां दिखाई दे रहे है और यहां पे एक फ्लोर मैट भी दिखाई दे रहा है।

और यहां भी दो ब्लैंकेट है एक ग्रीन कलर की और एक रेड कलर की।

सीसॉ है बिसलबंडे हैं और यहाँ पे कुछ छोटे-छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे बड़े बड़े झाड़ियां दिखाई दे रही है और यहां आसमान और बादल दिखाई दे रहे है।